--ओर टीन की दुकान दिख रही है और एक लड़का बात कर रहा हैदो खंबे लगे हुए दिख रहे है।